ये जगह बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही फेमस जगह में से एक है।

चर्च में बहुत से लोग आया करते है इस चर्च में बहुत से लोग प्रेयर करने के लिए आया करते है।

इस नदी के चारों तरफ का नजारा बहुत ही सुंदर है ये नदी बहुत ही फेमस नदी है।

यहाँ पर हर प्रकार की फिश मिला करती है यहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी की फिश मिला करती है यहाँ पे बहुत से लोग फिश खरीदने जाया करते है।